यह आप देख सकते रात का सीन है और काफी अच्छा दिख रहा है लाइटिंग के बगेरा से ऊपर से आप देख काफी प्यारा दिख रहा है।

यहाँ पे सारी जर्नल स्टोर की मतलब जर्नल सामान मिल जाते है खाने पाए की राशन के सामान है सारी मिल जाती है यहाँ पे और यहाँ पे काफी भीड़ रहता है क्यों की राशन के सामान उचित मूल्य पे यहाँ पे बेचीं जाती है।

और अगल-बगल ईटा वगेरा गिरी हुई है यह काफी अच्छा घर बनेगा यहाँ --

जो काफी फिट है जो जिम करने के कारन हुए है और जिम का कोई ज्यादा चार्ज नहीं होता है तो जिम करना बहुत ही जरुरी है फिटनेस रहना बहुत जरुरी--

एक पूल है जिसके नीचे ऐसे नदी गुजरी हुई है और ये सोन नदी है।